जोकि स्ट्रीट लाइट का खंबा है और यहां पर एक बहोत लंबा रोड भी दिख रहा है।

प्रेड वगैरह भी हो रही है शायद छब्बीस जनवरी की तैयारी चल रही हुई है।

दिख रही है बाउंड्री के साथ एक खेड़ भी खेत भी बना हुआ है।

यहां से बहुत सारी बिल्डिंग है बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है तरह तरह की बिल्डिंग है।

मेरे पास बैग है पीठ में और इधर उधर घूम रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत जगह दिख रही है जहां पर मुझे घना घना जंगल दिख रहा है जहां पर चील के पेड़ कोयल के पेड़--

जहां से बहोत सारी पोढ़ीया भी लगी हुई है मन्दिर के अंदर के लिए--

यहां पर मुझे एक बहुत ही खूबसूरत एरिया दिख रहा है यहां पर मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे--

यहां पर मुझे एक बहोत ही खूबसूरत एरिया नजर आ रहा है। यहां पर मुझे कोई भी एक आदमी दिखाई नहीं दे रहा है।

यहां से मुझे एक बहुत बड़ा समुद्र दिख रहा है जिसके आस पास एक बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे और हरे हरे पेड़ दिख रहे है।

दो तीन आदमी खड़े हुए एक आदमी गुजर रहा है जिसके हाथ में पाइप वगैरा है।

जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जहां पर मुझे दो दुकान के शटर भी दिख रहे जो कि बंद पड़े हुए हैं।

और यहां पर मुझे बहोत ही सारी खिड़कियां बहोत सारे दरवाज दिख रहे हैं।

फोटोशूट भी हो रहा है और यहां पर बहोत सारे लोग फोटोशूट भी कर रहे--

बहोत सारे बेंच वगैरा लगे हुए हैं। बहोत बड़ी बिल्डिंग है।

और नई बिल्डिंग बन रही है। जहां पर इसका निर्माण ही हो रहा है और यहां पर बहोत सारे सरिए वगैरा लगे हुए है और यहां पे साइड में एक थार भी खड़ी हुई है।